सकरी हॉस्पिटल ये बदायु में स्तिथ है।

ये एक चिड़िया घर है जहाँ पर जानवरों को --

तथा अन्य एक्टिविटीज़ यहाँ हो स --

ये स्टेचू किसी महान पुरुष की है।

प्रतीत होता है की ये द्वार किसी --

यहाँ बिविंन्न प्रकार की वस्तुयें देखि जा सकती हैं।

उसका नेम सरकार हॉस्पिटल दर्शाया गया है। जहाँ विभिन्न प्रकार की --

हेयर कट तथा अन्य --

यहाँ पे जैन मत के अनुयायी --

जो बिभिन्न प्रकार के नेटवर्क के लिए --

महैंद्रा की एजेंसी को दर्शाया गया है।

जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं चित्र से ये बा --